और चिप्स कुरकुरे की पैकेट भी टंगी हुई है अंदर की तरफ काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा कुछ बोरियाँ भी रखी हुई हैं।

जिसके ऊपर श्री पाश्र्व नाथ दिगम्बर छिण मंदिर लिखा हुआ है।